डांस करती हुई नज़र आ रही हैं ड्रेस्सेस पेहेन के।

और ट्रीज हमें नज़र आ रहे हैं। बीच में हमें पानी का फव्वारा नज़र आ रहा है। कुछ पानी हमें नज़र आ रहा है।

वो वहा पे शो हो रहा है। कुछ आर्टिफीसियल फ्लावर हमे शो हो रहा है। मोरपंख हमे दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं रेड कलर के बोर्ड पे।

पूजा के सामान भी रखे है। बोहोत सारे फल फ्रूट रखे हैं। बोहोत से लोग हमे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।

शो हो रही है। लॉक शो हो रहा है। गाडी हमे शो हो रही है।

अ यहां पे हमे एक शोरूम या हॉल नजर आ रहा शोरूम नजर आ रहा है। यहां बोहोत सारी --